ये एक रोड है जिसके साइड में ट्रीज लगे हुए हैं।

और बैंक के सामने दो आदमी खड़े हुए हैं।

चित्र में चार छात्र हैं जो एक बड़ी पेंटिंग को पकड़े हुए हैं।

अद्वितीया कलाकृति प्रतीत होती है।

जिस पर सफेद रंग के निशान भी डाले हुए हैं।

ये एक कंप्यूटर लैब की तस्वीर है।

जहाँ पर मरीज़ इलाज कराने आते हैं।

ये एक तस्वीर है जिसमें कपड़े टंगे हुए नज़र आ रहे हैं।

इसमें अलग-अलग प्रकार के कपड़े हैं जैसे कि--

फ्लोर की स्लिप पर एक अच्छा सा फैन भी लगा हुआ है।

ये एक मिठाई की दुकान की तस्वीर है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के लड्डू और मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं।

पेट्रोल पंप पे एक मोटरसाइकिल है जिस पर दो लोग बैठे हैं।

और सामने हरी घास भी है।

ये एक कैबिन की तस्वीर है।

और कैबिन में दो कुर्सियां और एक टेबल भी रखा हुआ है।

ये एक मिठाइयों की दुकान की तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें विभिन्न प्रकार की मिठाइयां नज़र आ रही है।

मिठाइयों के रंग काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं।

रेस्टोरेंट में फैंस भी लगे हुए हैं और सामने वाली दीवार पिंक रंग की है।

बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स में हैं।

काफी सारी चीजें नज़र आ रही है जैसे--

जमीन खोदने की पकी प्रक्रिया में एक्सकैवेटर की लम्बी झीप और चलने वाली मशीन नजर आ रही है।

लोग खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं।

ये एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है।

ये तस्वीर शाम के वकत ली गई है।

सामने कुर्सियों पर बैठे लोग उसको सुन रहे हैं।

कुछ हरियाली भी नजर आ रही है औ कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

और टेबल नज़र आ रहे हैं टेबल पे मैगजींस रखी हुई है और सामने डेस्क पे एक वर्कर या रिसेप्शनिस्ट खड़ा है।

और कुछ लोग आते-जाते नज़र आ रहे हैं।

ये तस्वीर एक रिटेल स्टोर की है।

जिमिंग मशींस पर कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए भी दिख रहे हैं।

स्टोर को काफी अच्छी तरीके से सजाया गया है।

बड़ी मेहनत से काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

और चश्मा और स्प्रेइंग बॉटल रखी हुई है यह एक बार्बर शॉप में तस्वीर ली गई है।

जहाँ पर बहुत सारी डंबल्स और कुछ जिमिंग इक्विपमेंट्स भी दिख रहे हैं।

और पिक्चर में काफी सारी आयरन रोड्स --

जहाँ पर शेल्फ पर विभिन्न प्रकार के मोबाइल फोंस लगे हुए हैं।

घर के बाहर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं।

धूप काफी तेज लग रही है।